और ये देखने में बहुत प्राकृतिक लग रहा है और ये ये चट्टानों के अंदर से आ रहा है पानी जो देखने--

लग रहा है यहां के कार भी दिखने में बहोत अच्छे लग रहे है।

छाते भी लगाए गएं हैं टीवी के यहां पे।

ये बच्चों को पढ़ा रहे है ये एक फ्री चाइल्ड एजुकेशन --

ये स्कूल के क्लासरूम की फोटो हैं जहां पे एक व्हाइट बोर्ड है और यहां पे बहोत सारे बेंच भी हैं।

ये एक रेलवे स्टेशन की फोटो है जहां पे एक भी रेल नहीं आई है यहां पे--

एक सीढ़ी भी है जो ऊपर से जा रही है रेलवे स्टेशन की--

और बाहर बहुत सारी पेटियां रखी गई हैं।

यह एक योगा क्लास की फोटो है जहां पे दो बच्चे उनकी योगा टीचर से योगा सीख रहे हैं।

और पेरेंट्स बैठे हैं यहां पे बहोत सारे बच्चे भी हैं यहां पे बहोत सारी कुर्सियां है जिसके ऊपर ये लोग बैठे हैं।

अ हैं यहां से सीधे जाते वक्त एक--

खंभा भी है और एक पुल है जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और ये देखने में दिल को सुकून भी पहुंचा रहा है।

यहां पे बहुत सारे आइटम मिलते होंगे इसके पास और एक ढाबा है यहां पे एक लड़का है जो इस सीढ़ियों में खड़ा हुआ है।

एक नींब बहोत सारे पेड़ है और यहां पे बंजर जमीन है।

यहां पे सफारी जोन बारह किलोमीटर दूरी पे है।

ये एक क्रिकेट ग्राउंड की फोटो है। जहां पे अ बहोत सारे लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और--

यहां पे एक मैम स्पीच दे रही है ये एक क्रिस्टियन है शायद यहां पे जीसस के बीच मे कुछ हो रहा हैं यहां पे अं --

रेड और ब्लू कलर की कारपेट बिछाई गई है जो देखने में बहोत अच्छा लग रहा है अ ये दिन में फोटो खींचा गया है।

स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है शायद यहां पे टैक्स पे बनाए गए हैं यहां पे एक भी आदमी या लोग--

पे एक भी लोग नहीं है यहां पे बहुत सारी लाइटें भी हैं और यहां पे तार भी दिए हैं यहां पे ये बहुत सारे पेड़ भी हैं।

गोल्डन कलर मे बनाया गया है गोल्डन कलर के पत्थर से यहा पे बहोत सारे पेड़ पौधे भी है जो दिखने मे बहोत अच्छे लग रहे है।

ये एक बच्चों की दुकान है यहां पे बहुत सारे--

के लिए कॉपर लगे गएं हैं यहा पे बहोत सारे--

यह स्कूल रेड औल वाइट कलर के परदे से सजाया गया है और यहां पे दो तीन पंखे भी हैं यहां पे लाइट भी है।

तो अभी अभी शादी हो रही हैं जो देखने में अच्छा लग रहा है यहां पे कैमरामैन भी हैं।

और यहां ये रंगोली बहोत अच्छी दिख रही है और यहां पे थोड़े पेड़ पौधे भी हैं गमले में--

अह और भी दीप है यहां पे बहोत सारे सिंदूर भी है जो देखने में बहोत अच्छे लग रहे हैं।

अ झरने का पानी जा रहा है यहां पे दो तीन मंदिर हैं यहां पे चार पांच अ आदमी--

और चार पांच लोग भी घूम रहे हैं यहां पे बहुत सारे पेड़ हैं जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं।